ए_सी रूम भी हैं और साइड में बहुत सारे होटल हैं।

गुलाबी रंग की दीवार दिखाई दे रही है।